हरियाली ही हरियाली नजर आ रही हैं हरियाली के आगे हमें एक घना बदल भी नजर आ रहा है।

ये दृश्य किसी खाद्य पदार्थ की है।

पत्ते का कलर हरा के अलावा रुड भी दिखाई दे रहा है जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है।